जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे है हमें यहां पे एक बहोत बड़ा मॉल दिखाई दे रहा है मॉल काफी साफ सुथरा और प्यारा है खुद आप यहां पे देख सकते है।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमें यहां पे बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर आप देख सकते दोनों तरफ गार्डन है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे बहुत बड़ा घर बना हुआ है देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है लोडिंग गाड़ी इसके बाहर खड़ी है एक भैया है।

यहां पे देख सकते है काफी सारी मशीने यहां रखी गई है देख लीजिए आप यहां पे बहोत ही अच्छी जगह है ये प्यारी सी साफ सुथरी।

ऊपर की ओर से कलश टाइप का नीचे टंग रहा है और आस पास दीवारों पे तितलियां हम देख पा रहे हैं देख सकते हैं डिजाइन के लिए --

छोटे छोटे से गमले में पौधे लगे हुए हैं ऊपर बड़े बड़े पेड़ है कुछ कुर्सी टेबल लगी हुई है काफी अच्छी फैसिलिटी है आप देख सकते है।

डाला गया है और मिट्टी में देख सकते हो ऊपर ब्रिज बना हुआ है ब्रिज के ऊपर ये लोहे की ले रेलिंग सी है देखिए।

बच्चे है छोटे छोटे आपस में ये देख सकते है कैसे डांस कर रहे है और यहां पे अच्छा खासा स्टेज है बुला --

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे एक मंदिर बना हुआ है।

ललिता देवी रामचंद्र काशीवाल अतिथि गृह है ये देख सकते हैं काफी बड़ा सारा है और यहां पे एक गार्डन है।